बाहर दो लोहे के गेट लगे--

मेरे सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा--

रिसेप्शन पर बहोत सारे गुब्बारे भी लटक रहे हैं।

व्हाइट --

बहुत सारी चौखटें रखी हुई--

दुकान के अंदर भी दिखाई दे --

मंदिर बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये लाइटिंग कलर से पेंट किया--

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उस पर योगा कर रहें हैं और एक पेड़--